बगल में एक तराजू भी है जिससे मछलियाँ तोल के दिया जाता है लोगो को।

लाइट वगैरा भी लगा हुआ है इसके साथ में।

में खाताधारको को सुनिश्चित से पैसा रहता है बैंक में |

और काफी मस्त है के ऊपर सोलर --

चारों साइड से लकड़ी का --

गाड़ी पार हो रहा है रोड में और एक बैनर --

यह एक बैंक है आई.डी.बी.आई. बैंक --

एक स्टोर जिस स्टोर में --

और इस मंदिर में भगवान का पूजा होता है।

और सामने पेड़-पौधे भी लगे हुए हैं अच्छे दिखने के लिए।

पीछे स्टेफनीयो के लिए होता है और ए --

बैटरी से चलता है रात को चार्जिंग को लगाता हैऔर दिन भर --